दुकान को गुब्बारों से सजाया हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक मजदूर छत की ढलाई करता हुआ नजर आ रहा --

तस्वीर में हमें सीमेंट का घर बना हुआ दिखाई दे रहा है।

मंदिर के आस पास बड़े बड़े पेड़ लगे हुएं भी नजर आ रही है।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

इस पर लाल रंग से सजाया हुआ नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक छोटा सा हा डैम दिखाई दे रहा है।

साइड में शीशे में बर्थडे कैप रखी हुई भी नजर आ रही हैं।

चर्च के ऊपर साइन लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारी बैटरी दीवार और जमीन पर रखी हुई नजर आ रही है।

उसके ऊपर पीला रंग का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है।

घर के शीशे पर बहुत सारी धूल मिट्टी लगी हुई दिख रही है।

आसपास रोड पर पेड़ और पौधे लगे हुए भी दिख रहे हैं।

इसके बोर्ड पर मां पीतांबर ऑटो लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड के साइड साइड में बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें मैट पर बहुत सारी मरी हुई मच्छी रखी हुई दिखाई दे रही है।

जिसके साइड में छोटा सा घर जैसा बना हुआ भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर मे हमें जिम के अंदर का नजारा दिखाया गया है।

जिम के अंदर एक आदमी बैठकर जिम करता हुआ नजर आ रहा है।

तस्वीर में हमें एक बहुत बड़ी लेक दिखाई दे रही है।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

बिल्डिंग के ऊपर नीले रंग से श्री नरसिंह विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पनारी ललितपुर लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

हमें बहुत ही पारंपरिक और देहाती किस्म का घर दिखाया गया है।

गेट की पीछे की तरफ सफेद रंग का स्कूल भी दिखाई दे रहा है।

एक बहुत बड़ा सफेद रंग का स्कूल भी नजर आ रहा--

छोटी छोटी दुकाने लाइन से लगी हुई दिखाई दे रही है।